खूबसूरत नृत्य है यह कोई नृत्य समेलन चल रहा हैं जहाँ पर एक स्त्री हमारा पारंपरिक वस्त्र पहन के पारंपरिक नृत्य कर रही हैं। जैसा की हम देख पा रहे है वह पूरे चमकदार रंगों मे सजी हुई हैं।

यह किसी नदी या तालाब के पुल का सीन है दृश्य है जहाँ हम देख सकते हैं पब्लिक कैसे नहा रही है।